गार्डन के सामने काफी बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

बाल्टी के बहार काफ़ी सारे पेड़ भी दिखाइ दे रहे--

और उपर काफी अच्छी डेकोरेशन भी दिखाई दे रही--

यहां पर काफी सारी तस्वीरें दिखाई दे रही--

यहां पर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं।

इस गार्डन में काफी सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे--

और पासमें एक बाइक भी दिखाई--

पीछे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

सामने दीवार पर एक टी_वी भी दिखाई दे रहा--